यह दृश्य हमें एक प्रज्ञा केंद्र की दिखाई दे रही है जिसपे एक आदमी खड़ा है।

यह दृश्य में हमें एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

आसमानी कलर की बहुत सारे चेयर भी रखी हुई है और साइड में एक टेबल फैन भी--

यह दृश्य में हमें एक दुकान नजर आ रही है।

जो बहुत ही अच्छा सा सजा हुआ है।

और छत के बगल में बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नजर आ रही हैं जो की रंग बिरंगी हैं और ऊपर व्हाइट कलर की--

इस दृश्य में हमें एक पेट्रोल पंप का दिखाई दे रहा है जिस पे बहुत सारे पब्लिक खड़े--

पेट्रोल लेने के लिए और वह ऊपर सीलिंग पर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

और पीछे से व्हाईट व्हाईट असमान भी दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक प्रोजी कलर का टंकी भी नजर आ रहा है और एक सिलेंडर भी रखा हुआ है।

और साइड में एक झंडे भी नजर आ रहे हैं।

और दीवाल पे दो नकली शेर का पिक भी बना हुआ है।

और उसके बगल में कुछ टाइल्से से भी नजर आ रही है और हमें सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है और--

और इसमें बहुत सारे लोग भी है और इस मूर्ति के पीछे की दीवार वाइट कलर की है।

जो कि धनबाद का है इसपे इसके बाहर बहुत से लोग नजर आ रहे हैं जो रंगबिरंग के कपड़े पहने हुए हैं।